यहां एक पुस्तक की दुकान है जिसका कलर ब्लू है इसके बगल में एक दुकान हैजिसके अंदर।

यह सब्जी मंडी है जहां की।

आ पत्ता गोभी है गोभी है टमाटर है गाजर है।

कुछ और कुछ भी सब्जियां हैं और दुकान वाले अंकल बेच रहे हैं और एक भैया लेने आए हुए हैं दुकान ऊपर से कुछ रूफ का बना हुआ है।

एक दवाई की दुकान है जिसमें कि बहुत सारी दवाइयां हैं।

और इंजीनियरिंग क्लासेस चलती हैंऔर नीचे एक म्यूजिक महल भी है।

सामने एक कपड़े की पुतला भी हैजहां की।

एक डब्बा भी है ब्लू कलर का।

यह एक गली है जहां की बाइक और स्कूटी लगी हुई है और एक ब्लू कलर का डस्टबिन भी है और।

यहां एक केला का पेर भी है जहां कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं।

यहां एक बिल्डिंग है यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं एक लोग।

यह एक जूते और कपड़े की दुकान है ऊपर कुछ।

यह एक जेसीवी है जो कि पानी में डूबा हुआ है।

यहां एक बिल्डिंग हैजो कि उजला कलर का है उसमें दरवाजा हैजो कि ब्लू कलर का है बगल में एक सीरी भी है।

ये एक लाइब्रेरी है जिसमें कि एक एसएससी का किताब रखा हैऔर एक बोतल रखा है।

यहां कोई कॉलेज हैजो कि पीले कलर की बिल्डिंग से बनी है उसके ऊपर रूफ है यहां बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं।

और बहन पिटोल भरवा रहे हैंऔर --

यहां पे एक लड़का हैजो कि पेट्रोल भर रहा है पीछे भी कुछ बिल्डिंग है।

क्रीम कलर में है पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरने वाले लोग हैंजो कि बुल्लू और।

जिम हैजहां की बजरंगवली की फोटो लगा हुआ है और एक बॉडी बिल्डर का फोटो भी हैऔर बहुत सारे मशीन हैजिससे कि।

बॉडी बिल्डर आके अपना बॉडी बनाते हैं।

और कुछ मिठाइयां भी है और दुकान वाले भैया पैसे गिन रहे हैं।

जहां मिस्त्री लोग घर बना रहे हैं पीछे दो पैर भी हैं एक पानी वाला पाइप भी जा रहा है।

यहां एक घर है जिसके सामने बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है।

शीशा का सामान हैजिसके ऊपर रखा हुआ है।

यह एक जिसमें बुल्लू बुल्लू बहुत सारे कुर्शियां हैं एक बोर्ड है जिसमें विवेकानंद का फोटो लगा हुआ हैऔर उसमें कुछ लिखा हुआ भी है।

उजला बोर्ड है जिसके ऊपर हरा कलर में क्रॉस एफ़_एक्स_टी लिखा हुआ है।

एक साइकिल भी है और कुछ मशीन भी है।

खाना बनाकर रखने वाले बर्तन में खाना रखे हुए हैं खाना बनाने वाले--

यह एक मिट्टी कलर की बिल्डिंग है जिसमें एक लड़की की फोटो हैऔर एक औरत की फोटो है नीचे.--

दो चौकी लगी हुई है जिस पे गद्दा बिछा हुआ है उसके ऊपर पड़ने वाला टेबल रखा हुआ है बगल में खिड़की भी है।

जो कि वाइट कलर की है इस इस घर का कलर--

पलंग है जिस पे उजले-उजले कलर का तकिया गद्धे और विछावन है।

दीवार पे कुछ पेंटिंग्स भी बना है और एक टी_वी भी है जो कि भूरा और काला कलर का है और एक ट्रॉली बैग भी है।

ऊपर कुछ लिखा हुआ है तत्काल काउंटर--

यह एक कमरा है जो कि उजला कलर का है एक पलंग भी है उसके ऊपर उजला कलर और लाल कलर का गद्दा है और एक चप्पल है।

एक ट्रोली बैग भी है और एक रिमोट भी है।

यह एक लाइब्रेरी है जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहां लकड़ी की टेबल बन रही है और कुर्सी की रंग काला है।

यहां एक बिल्डिंग है जिसके नीचे बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है एक उजला कलर का स्कॉर्पियो है एक लाल कलर का असवार--

झांका हुआ है और एक बोर्ड है जिसमें कि लिखा हुआ हैबिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन--

यह एक डांस क्लास है जहां बहुत सारे बच्चे डांस सीख रहे हैं।

एक डब्बा भी है जिससे एक भैया पानी को फूल दे रहे हैं।

बहुत सारे सीमेंट के बोरे भी हैं और कुछ बच्चे चौकी पर बैठ के पढ़ रहे हैं।

सब्जी मंडी हैजिसको लिखा हुआ हैग्रोसर मंडी सुपरमार्ट--

दो बैनर लगे हुए हैं एक पे लिखा हुआ हैबुक्स एंड एम ई --

क्वांटिटी के चावल है बहुत सारे खाने वाले चीजें भी है जैसे कुरकुरे--

यह एक मस्जिद है जहां की मुस्लिम लोग नमाज पढ़ रहे हैं और दो मुस्लिम बातें कर रहे हैंखुद में--

और एक टाइमर भी लगा हुआ है।

यहां एक सब्जी मंडी है जहां टमाटर गोभी--

डी_जे भी लगा हुआ है और एक इंसान है जो कि बैठ के देख रहा है।

यहां कुछ लाल कलर बैनर में लिखा हुआ है मेड इजी--

और इसके बगल में मंदिर भी है।

औरतें योगा कर रही हैं और वह नीचे--

गुलाबी कलर का लाल कलर का--

यह एक घर है जो कि लाल और पीले कलर और ब्लू कलर से बना हुआ है।

यहां एक बुद्ध भगवान की प्रतिमा है जो कि उजला कलर का है।